यहां पे बहुत सारी खटिया वगैरा टंगी हुई दिखाई पड़ रही हैं लोहे की।

यहां पे जगराता हो रहा है वो तो माता रानी का हो रहा है।

आगे मेज पड़ी है जिसपे बहुत ज्यादा सामान रखा है बोतल वगैरा ऊपर भी सामान रखा हुआ है एल_सी_डी लगी है।

ये बिल्डिंग देखने में बहुत बड़ी है और यहां पे एक बाइक और एक कार खड़ी हुई है।

यहां पे तीन चेयर पड़ी हुई है और बाल काटने का सामान रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे मजदूर है और कुछ लोगों ने टोपी लगाई रखी हुई है।

ऊपर टीन पड़ी है और साइड में एंगल वगैरा लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

और यहां पे दो तीन लोग काम करते हुए दिखाई पड़ रहे है और टक्टर चल रहा है।

इस आदमी ने काली पैंट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है।

इसके आसपास लाइटें लगी हुई हैं और यहां पे दो हैं एक में पेट्रोल और एक में डीजल ।

और यहां पे एक लेडिज और एक जेंट्स है जो लेडिस को एक बोरी देते हुए दिखाई पड़ रहा है।

इसके एक आसपास गेट लगा हुआ है एक इधर अ एक इधर यहां--